इ नदी में है इ चारो पट्टी घुम रहा है।

ई स्कूल है लाल रंग का रंग लगा है बोर्ड है मैदान है और गाँच ब्रिछ उगा है।

पुराना स्कूल है मैदान हैगा।